--और वो ब्लैक कलर का टोपी लगा हुआ हैउसमें सफेद कलर की चश्मा भी पहनी हुई है और हाथ में एक रिबन बांधा हुआ है।

एक बच्ची है जो गंजी पहनी हुयी है और पूजा कर रही है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो की नील कलर का कुरता पहना हुआ है।

'' एक कार लगी हुई है जिसको मैकेनिक ठीक कर रहा है। ''

वाटिका है वाटिका में बहुत सारे फूल लगे हुए है।